यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए यहाँ का सामान बहुत ही बढ़िया होता है इसीलिए लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए--

जाते हैं खेलने के लिए और इस ग्राउंड में तरह तरह के खेल होते हैं टूर्नामेंट होते हैं।

यहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन और भी तरह तरह के खेल का टूर्नामेंट होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग आते है सुबह को दौड़ने के लिए--

चतुर्दशी के दिन होते हैं और इसे हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं |

और ढलाई करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है बोहोत ज्यादा कठिनाई आते है यहाँ पे मुंडी पर उठाकर लेगना पड़ता है मसाला को --

और दाढ़ी बनवाने के लिए और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बाल को काटा जाता है हर तरह के डिजाइन से बाल को काटा लोग आते हैं बाल कटवाने के लिए यहाँ पे --

से लोग दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। बहुत ही सुविधा होता है ट्रेन गाड़ी से जाने आने में। ट्रेन गाड़ी बहुत ही बढ़िया गाड़ी होते हैं।

पिक्चर का यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जा रहा है जो पैदल चल रहा है और यह रोड में बहोत ही ज्यादा पानी है।

पानी नहीं निकलने के कारण से रोड पर आ गए हैं नाली भर जाने के कारण यह रोड काफी ज्यादा बड़ा भी बहुत ज्यादा चौड़ा है इस रोड में बहुत पानी है।

बहुत ही अच्छा गेम है इसे बहुत लोग खेलना पसंद करते हैं और यह गेम बहुत ही--

यह एक फैक्ट्री का फोटो दिखाया गया है जहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए फैक्ट्री में और यह फैक्ट्री काफी ज्यादा बड़ा है |

फैक्ट्री में बहुत बड़े-बड़े मशीन होते हैं जिससे लेबर लोग काम करते हैं फैक्ट्री में--